बड़े बड़े लगाए गए है बस ह बाज़ू में मिटटी है पौधे है हरे भरे घास है बैठने फिसलने क झूले ह--

बाहर में बहुत सारी लाइटिंग लगी है और कुछ अंदर का बोर्ड भी यहां लगाया गया।

पड़े हुए है खिड़की है यहाँं पे बहुत सारे बैनर्स रखे हुए है नीचे टायल भी बिछाये गए है यहाँं पर बड़े बूढ़े लोग भी बैठे --

आजू बाजू हरी भरी घास भी उठी हुई है यहां पे इस दुकान में--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

फूलो के लड़ा बनाए गए हैं यहां पे बैठने के लिए टेबल भी लगेगा और यहां पे आदमी खड़ा हुआ है और यहां पे थैला में भी सामान र --

बहोत सारी ऐ_सी भी दिख रही हो और यहां पे व्यक्ति भी बैठा व खड़ा हुआ है यहां पे बड़ी सी यहां पे टी_वी भी दि--